जिसके एक किनारे बहोत सारी बोटें खड़ी हुईं हैं।

खींच रहे हैं अपनी-अपनी और --

नदी में नहा रहे है पूजा कर रहे है।

वाला दुकान का फोटो है जिसका नाम पॉल ड्राई क्लीनर्स एंड ड्रायर्स है। जिसे --